यहाँ हम देख सकते हैं की ये बैंक है जिस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ।

उसमे भी कुछ-कुछ समाने रखे हुए है एक बाइक है जो कि अलग है यहाँ पे एक शीशे का आ गेट बनाया हुआ है ।

जो की व्हाइट कलर का टी-शर्ट --

और साइड में हरे-भरे घास लगे हुए है सामने गाड़ी लगी हुई है।

यहाँ पे साइड में पहाड़ खेत खलिहान सारा दिख रहा है।

और मंदिरो की कलर बहोत बेहतरीन किया हुआ है।

और यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए है जो कि एक रेड कलर का टी-शर्ट और --

और ये घर दोनों सेम दिख रहा है दोनों पिंक - पिंक कलर से पेंट किया हुआ है।

और साइड में एक ब्लू कलर का बाल्टी है एक और बाल्टी है उधर ।

यहाँ पे एक लेडीज बैठी हुई है हाथ में कुछ ली हुई है।

जो कि तरह-तरह की कलरे की हुई है।

यहाँ हम देख सकते हैं की यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ है मशीन में एक आदमी कुछ रहा है और साइड मे ढ़ेर सारे लोग खड़े हैं।

यहाँ पे कुछ मर्स मशीने रखे हुए है जो की तरह-तरह के मशीने रखी हुए हैं।

यहाँ स्टेज पे दो पंखे लगाए गए हैं।

यहाँ पे कुछ कुछ आदमिये भी है जो की फील्ड में बैठे हुए है।

ये शायद जिम क्लास है और यहाँ पे एक आदमी है जो की ब्लैक कलर टी-शर्ट पहना हुआ है एक --